पिक्चर में मुझे दिख--

और यहां पर बहोत सारे रिक्शा खड़े हैं।

तो जैसा कि यहां पर मुझे इस--

रहा है कि यहां पर दो लो--

एक बहुत बड़ा लॉन्च है यहां पर--

सत्ते हैं यहां पर एक--

तो जैसा की--

यहां पर टेबल में एक मनी प्लांट है और--

बहोत सारी लाइट्स हैं और--

बहोत बड़ा स्कूल है।

फोटो में बहुत सारे--